यहाँ पर बहुत सारे बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पर कारे खड़ी हुईं हैं।

यहाँ पर हमें बहुत बड़ी लम्बी चौड़ी रोड दिखाई दे रही है।